यहां पर एक पार्लर है पार्लर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है और इस पार्लर के अंदर काफी सारे लोग हैं |